एक स्टोर हमें दिखाई दे रहा है।

और काले रंग का कुर्ता पहनी है वो पीछे काले पर्दे लगे हुए हैं।

अ जो टंगे हुए भी नज़र आ रहे हैं झूमरों में--

और बस नीले रंग की और एक कार भी पानी में डूबी आधी दिखाई दे रही है।

बड़ा सा एक हार हमें दिखाई दे रहा है।

और जालियां लगी हुई हैं खिड़की में बोर्ड लगा हुआ है ऊपर बिल्डिंग में।

हमे इस तस्वीर में लाल नीचे जमीन में कारपेट बिछा हुआ नज़र आ रहा है लाल रंग का।

और हमें इस पे बोर्ड लगा दिखाई दे रहा है दया श्री बॉयज हॉस्टल का।

के उस तरफ भी पानी के उस तरफ भी पेड़ लगे हुए हैं हरे हरे ऊपर नीला-नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

हमें तस्वीर के अंदर दिखाई दे रहे हैं कांच की अ--

हमें तस्वीर के अंदर हरे-हरे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं एक बिल्डिंग के आगे।

तस्वीर के अंदर हमें एक अ बड़ी मिनारा दिखाई दे रहा है नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

के हाथ में पेन है लाल कल की कलर की कुर्सी पर वो बैठा है।

और उसने मास्क लगाया हुआ है एक बच्ची पास में खड़ी है।

और प्लास्टिक की डलियां भी लाल नीले रंग की दिखाई दे रही हैं रखी हुई।

अं फ्लावर्स बनाए गए हैं दीवार के ऊपर स्टीकर लगा है।

बेड लगा हुआ है गोल्डन रंग के अ कुशन और वाइट रंग के तकिए हैं।

तस्वीर के अंदर एक लाल रंग की कार है जो हमें ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है और उसके पास खड़ा है एक आदमी कार के पास भी खड़ा है एक दूर आदमी भी खड़ा नज़र आ रहा है।

और हमें एक और दूसरी लाल कलर की कार खड़ी हुई नजर आ रही है सामान बहोत सारा में रखा दिखाई दे रहा है वहां पन्नी बंधी हुई एक बड़ी--

इस तस्वीर में हमें दिखाई दे रहे हैं पौधे लगे हुए हैं बाहर।

और एक और आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है और बाहर भी एक आदमी मोबाइल हाथ में लिए दिखाई दे रहा है कांच के ऊपर बना हुआ--